तरीके के मशीन हैं और एक इंसान भी काम कर रहा है और--

कुछ लकड़ी और रॉड भी रखे हुए है और कुक शरिये भी निकले हुए है ।

इस तस्विर में एक कॉफ़ी शॉप दिखाई जारी है जिसके पास--

यह एक बहोत ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसमें बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं कुछ--

और एक हिसाब से है इसमें कुछ धरे है।

एक बिहार का द्रिस्य दिखाया जारा है जिसमे छट पूजा होरा है।

बोहोत सारे गद्दे लगे हुए है और--

बुरी सी पीछे कुछ अड़ एक बच्चा और एक एंटी खड़ी है।

जैसे की इस चित्र में दर्शाया जा रहा है कि--

एक घर है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे बहुत सारी गिट्टियां--

पत्थर रखे हुए है और लकडियो से दीवाल को--

जेसा की इस चित्र में दर्शाया जा रहा है।

जेसे की इस द्रिस्य में दिखाया जा रहा है की--

यह एक बुक शॉप है जिसमे बोहोत सारी बुके रखी हुई है और--

और बोहोत तहरा तहरा के एक्सोसाईस करने के मशीनस है यहा पे--

जैसे कि इस तस्वीर में दर्शाया जा रहा है कि यह एक--

जिस समय बोहोत सारे ग्राहक खड़े है और कुछ वर्कर --

टीचर्स खड़े है एंड में कुछ बगल में बन्दे परक में गुमने आये हुए है व्यक्ति भी है।

आदमी अपने बाल कटवाने आ रखे है और कु--

स्कूल है जहा पर कुछ विध्यार्थी आर टेल का क्राफ्ट के--

गुलू सब रखा हुआ है।

आई_टी_एल क्राफ्ट में पार्टीसिपेट लेरे है जिस मेसे खुद ही कुछ विद्यर्थियोने --

जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि यह एक बेकरी शॉप की दुकान है जहा पे तीन तरह की आइस क्रीम एक ही प्लेट में रखी हुई है वहाँ पे तीन चमच्च --

एक बाइक भी खाड़ी है और गार्डन गिल के पास एक कोई अंकल खड़े है और अंदर कुछ स्टूडेंट जा रहे है जो बैग भी ले रखा है।

ओर ये स्कूल की बाहर गेट के बाहर कुछ ज्यादा ही साफ सफाई है।

बहुत ही गहरा पानी है और बगल में हरियाली ही हरियाली है और ब्रिज पे कोई भी आदमी या कोई भी व्हीकल नहीं ही चल रहा है।

दृश्य में दिखाया जा रहा है एक ये छठ पूजा का स्थल है जहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हैं वहां की लडकियां और आगे--

यहा पे कोई आदमी नही है बस इसके पीछे जो--

गेट वो वाईट कलर का है ओर गेट लॉक्ड है।

गेराज है जिसमे कार्बन बस्टर का कोई काम होता है अभी गेराज मे एक--

जेसा की इस तस्वीर में दिखाया जारा है की ये मारुती सुजुकी की का--

और यहा पे ए_सी वगेरा भी है बट ये बेक साइड का व्यू है।

जैसा की इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि यह एक पेट्रोल पंप है जो की --

यहा पे कुछ वर्कर है बहुत ही ज्यादा ही भीड़ है यहा पे--

जेसा की इस तस्वीर में दिखाया जारा है की यहाँ पे --

एक शादी का जो शेरवानी होती हें वो लगी हुई इंडो वेस्टर्न टाइप में हें और बोहोत ही प्यारा कलर हें कढ़ाई--

नया ये जो इंडो वेसटन शेरवानी है ये --

अम्म और कुछ समान यही है और एक बहोत सारी नंबर प्लेट्स भी रखी हुई है इधर--

लव स्ट्रेट स्ट्रेट नही होकी हरयाणा--

जैसा की इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि यह एक पार्क है।

और यहा इसके बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट का--

कारपेट्स लगे हुए है और कुछ कुर्सिया छोटी छोटी राखी हुई है और कुछ लोग खड़े है --

जेसा की आप इस चित्र में देख सकते है या एक नदी--